यहाँ पर एक भारतीय स्टेट बैंक दिखाई दे रहा है।

और एक पोल दिखाई दे रहा है। आसमान दिखाई दे रहा है।

चार लोग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं दो लड़कियां और दो लड़के --

आलमारी दिखाई दे रही है साइड में दो आदमी दिखाई दे रहे हैं कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं और इधर एक फेन लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और उधर साइड थोड़ा पानी नदी टाइप दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी टी.वी. देखते हुए दिखाई दे रहा है।

फैन लगे हुई नजर आ रहे हैं लाइटिंग लगी नजर आ रही है और इधर साइड एक गेट दिखाई दे रहा है।

यहां एक पिज़्ज़ा हट दिखाई दे रहा है जहां पे कुछ बलूंस लगे हैं रेड और व्हाइ रेड और व्हाइट कलर के।

यहाँ एक पुलकित हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक फ्रूट्स की शॉप दिखाई दे रही है और एक बोर्ड लगा हुआ है। ब्लू कलर का स्पीड लिमिट वाला --

यहां एक तीर्थ क्षेत्र दिखाई दे रहा है। उधर एक गेट दिखाई दे रहा है। कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। साइड में एक विंडो दिखाई दे रही है।

यहाँ एक अ-रेड कलर का और येलो कल का पंजाब नेशनल का बोर्ड लगा हुआ है।